इस चित्र में फोर व्हीलर नजर में आ रहा है बस नजर में आ रा--

पत्थर से बने हुए दुकानें नजर में आ रहे हैं। बहुत सारी चेयर नजर में आ रहे हैं। पानी का बोतल नजर में आ रहा है।

और बिल्डिंग नजर में आ रही है पत्थर से बने हुए खंबे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में पत्थर से बनी हुई दीवाल दिखाई दे रही है।

मांदिल दिखाई दे रहा है लोखंन से बनी हुई गेट दिखाई दे रही है।

प्लास्टिक के दरवाजे नजर आ रहे हैं और दो चेयर नजर आ रहे हैं।

मट्टी की रोड दिख रही है एक टैंकर दिख रहा है।

कुछ कुछ पौधे नजर में आ रहे हैं हरे हरे पेड़ नजर में आ रहे हैं।

इस चित्र में एक टी_वी है बहुत सारे कारपेट हैं कुछ पोटलियां हैं।

बहोत सारे कोल्ड ड्रिंक नजर नजर में आ रहे हैं एक पंखा नजर में आ रहा --

गिलास में स्पून रखा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में बहोत सारी गाड़ियाँ नज़र में आ रहे है बहोत सारे पेड़ पोधै नज़र आ रहे हैं।

खड़ी नजर आ रहे हैं बहोत सारी मशीने नजर में आ रहे हैं।

लोखंड से बने हुए सीढ़ी नजर में आ रही है।

कुछ बोतल नजर में आ रहे हैं। ग्लास दिखाई दे रहे हैं। बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रहे हैं।

गाय नजर में आ रही है गाय के बछड़े नजर में आ रहे हैं।

औरत दिख रही है बहोत सारे बच्चे दिख रहे हैं।

एक साइकिल दिख रहा है एक चेयर दिख रहा है और एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है थैंक्यू ।

नीचे पाइप नजर आ रहा है एक झूला नजर आ रहा है छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

मिट्टी वाला रोड नजर में आ रहा है।

इस चित्र मे मट्टी वाले रोड नज़र मे आ रहे--

प्लास्टिक्स के खंभे दिख रहे हैं पतले पतले --

बोहोत सारी कुर्सियां बिछाई गई हैं बोहोत सारे सोफा लगाए गए हैं।

इस चित्र में दो लाइटे नजर में आ रहीं हैं।

पत्थर से बने हुए दिवाले नजर में आ रहे हैं।

एक ब्रिज दिख रहा है कुछ मकानें दिख रहे हैं।